सामने एक गेट बना हुआ है। गेट के ऊपर एक रथ भी बना हुआ है। रथ में कुछ आदमी नज़र आ रहे हैं। ऊपर एक झंडा भी नज़र आ रहा है।

साइड में एक शीशा नजर आ रहा है। शीशा में बैनर का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। नीचे ब्लैक कलर की टाईल्स बिछी हुई हैं।

सामने एक दीवार नजर आ रही है। दीवार पर एक प्लस का साइन टंगा हुआ है जिसमे येशु मसीह टंगे हुए हैं। साइड में रड कलर की चेयर लगी हुई है।

सामने एक हॉल नजर आ रहा है। हॉल में व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई हैं। ऊपर छत नजर आ रही है। छत पर व्हाइट कलर का पेंट हो रहा है।

सामने एक पिलर है पिलर के ऊपर एल.इ.डी लगी हुई है। सामने हरे रंग की घांस भी लगी हुई है। साइड में बॉउंड्री हो रही है।

सामने एक सड़क नजर आ रही है। सड़क के इस पार एक बाइक खड़ी हुई है। सड़क के उस पार एक बहोत बड़ा गेट नजर आ रही है जो लोहे का बना हुआ है।

सामने कुछ अम्ब्रेला लगे हुए हैं। अम्ब्रेला रंग बिरंगे है। एक आदमी बैठा हुआ है। जिसने व्हाइट कलर की लोअर पहनी हुई है।

कुछ पेन भी नजर आ रहे है। कुछ स्कें स्केच पेन नजर आ रहे हैं।

गेट के ऊपर एच डी ग्रुप ऑफ़ कॉलेजेज लिखा हुआ है।

ब्रिज पर के सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं।

मन्दिर के साइड में एक मूर्ति बनी हुई है।

कुछ मेजे रखी हुई है। मेजो के साइड में कुछ कुर्सियां रखी हुई है। नीचे टाइल्स बिछी हुई है। टाइल्स का कलर ब्राउन है। कुछ लाइटे लगी हुई हैं।

एक पर युपीएससी नोट्स लिखा हुआ है। एक पर इगनू बुक्स लिखा हुआ है।

कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं। सामने एक बहोत बड़ा पेड़ लगा हुआ है। पीछे एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

एच.डी.ऍफ़.सी. बैंक लिखा हुआ है।